इमली कलर की शर्ट वाला दिखाई दे रही है अंदर से बैंक खुली हुई है बैंक कि आ बगल में एक पर्चा भी चिपका हुआ है एक लोगो भी बना हुआ है जो लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

और न न उन वहाँ एक पार्क बना हुआ है पार्क में कुछ लाल कलर के गमले रखे हुए है ने एक औरत है जो हाथ मे मटका पकड़े हुए खड़ी है और पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है जहाँ--

गेट का रंग काले कलर का है स्ले स्लेटी कलर की एक घर बना हुआ है और सामने गेट लगे हुए हे और सामने एक पेड़ भी लगा हुआ है।